नीचे एक टेबल रखी गई है जिसके ऊपर यह सब सामान रखा है।

एक व्यक्ति कुछ सामान लेकर जा रहे हैं बाहर की तरफ बहोत सारे सफेद रंग के बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं एक--

यहां पर सामने की तरफ एक बैंक है।

यहां पर सामने की तरफ एक घोड़ा गाड़ी दिख रही है।

यहां पर यह एक बड़ी सी चट्टान है।

सफेद रंग की है बराबर में सफेद रंग के बड़े बड़े खंभे हैं।

यहां पर महिलाएं तथा पुरुष स्केटिंग कर रहे हैं।

यह पानी से भरा हुआ एक स्विमिंग पूल है।

साइड में स्वीट इस फैट क्राइंग लिखा है।

तथा उनके नीचे ए दो रथ यात्राएं रखी गई हैं।

में नीचे की तरफ बहुत सारे रैक रखे गए हैं जिनमें अलग अलग कपड़े रखे गए--

कुछ बच्चे कुछ व्यक्ति यहां घूम रहे--

जिस पे ए_टी_एम लिखा है सामने की तरफ एक कांच का दरवाजा है जिस--

सामने की तरफ बहुत सारी लाइटे लगी है जो नीले रंग की है।

इसके ऊपर फूलों से सजावट की गई है।

जो पेंट के डब्बे हैं यह गुलाबी लाल हले हरे रंग के डब्बे हैं।